अपने हाथों के ऊपर बूट लगाए हुए हैं और--

टैब उठाई हुई है और काले रंग के बूट पहने हुए और उसके पीछे--

पर एक बंदे की तस्वीर लगी हुई है और--

और एक पंखा नजर आ रहा है और एक--

ये सामने जो तस्वीर नजर आ रही है इसके ऊपर एक भारत का झंडा नजर आ रहा है।

ए गाने और नाचने की प्रैक्टिस कर रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे कोई--

खान पड़े हुए हैं नीचे एक बैठने के लिए स्टूल पड़ा हुआ है और देख के ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई कपड़े की दुकान है पीछे पंखा भी लगा हुआ है --

ये फूल जड़ी ऐसी नजर आ रही है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और--

फूल नजर आ रहा है जिसके अंदर सफेद रंग की पत्तियां लाल रंग की पत्तियां--

ये सामने तस्वीर नजर आ रही है ऐसे लग रहा है जैसे कि ये कोई गवर्नमेंट की जगह है जिसके बाहर--

योर हेल्थ अवर मिशन और इसके पीछे बड़ा ही खूबसूरत--

रंग के बोनट के ऊपर एक मोनोग्राम लगा हुआ है सुनारी रंग का।

ये सामने तस्वीर के अंदर चोकोलेट केक नज़र आ रहा है जिस--

और ओरियो के केक लगे हुए हैं और साथ ही उनके--

के लिए ताकि वह खुश हो जाए और उसके साथ बहुत सारा प्यार करें।

इसके अंदर पैंट्स शर्ट्स पहनी हुई है और प्यारी लग--

बना हुआ है जिसने तो वो अपने लेटर डालने हैं किसी प्यारे को सेंड करना है।